और हरा-हरा दिख रहा है उसके पीछे में बहुत घने जंगल दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही हरा भरा है उसके किनारे में कुछ घर भी दिख रहे हैं।

यह एक बस स्टेशन दिखाई दे रहा है जो की दो तीन बस खड़े हुए है उसके आगे में दो कार चलती हुई नज़र आ रही है।

और हरा भरा दिख रहा है उसके बीच-बीच में घास भी दिखाई दे रहे हैं।

तीन सौ पचपन तीन सौ निन्यानबे दो सौ निन्यानबे ऊपर में कार्टून सब में समान रखे हुए --

यह एक रात का समय है और कुछ बिल्डिंग भी है जो की बहोत अच्छे से सजाया गया है ऊपर में लाइट की व्यवस्था की गयी है आगे में कुछ ट्र क्रिसमस ट्री जैसे है।

यह एक पुराना घर दिखाई दे रहा है जोकि बहुत ही मटमैला है और कुछ डरावनी दिख रही है उसके आगे में कुछ --

नीचे जमीन सब पक्का का दिखाई दे रहा है खिड़की है जो कि खुला हुआ है ऊपर में कुछ वायरिंग भी है और बोर्ड भी दिखाई दे रहे है और कुछ पोस्टर भी लगे हुए है।

यह एक रेलवे है जो कि चलते हुए नजर आ रहा है उसके किनारे में एक महिला चल रही है उसके किनारे में कुछ लोग भी चलते नजर आ रहे हैं।